साइड में रे दो साइड में तो रेड कैबिन और बीच में ग्रीन कलर का है।

बनाए गए हैं बहुत आदमी यहाँ पे वर्क करते हैं ना।

देखने में बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान लग रहा है जैसे मॉल टाइप है या बहुत बड़ा होल सेल टाइप है।

देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है रंग बिरंगी और बहुत खड़ी हुई है आदमी बहुत जमा है।

में देखो सब अपना अपना गाड़ी ले के आए हैं यहाँ पे।

ये बहुत कुछ रखा है ऊपर भी देखो टंगाया हुआ है।

देखिए रास्ता के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं बिल्डिंग भी हैं प्लाट भी हैं।

देखिए ये बहुत बड़ा हॉल है और लाइटिंग जो पड़ रही है ना बहुत सुन्दर है पर्पल कलर का है व्हाईट कलर की लाइ--

खाना वाना सजाया हुआ है प्लेट वगैरह रखा हुआ है।

और आदमी ड्रेस पहन के घूम रही इधर उधर सजावट हो रहा।

पास में और भी बिल्डिंग हैं तरह तरह का कुछ मिल रहा होगा।

सब आदमी देखने के लिए जा रहे हैं कोई देख के आ रहा है।

देखिए रास्ता का बीच में ये किताब की दुकान ले के बैठा हुआ है।

बहुत रकम की मशीन से कोई किसी से करता है कोई किसी से करता है कोई वेट लॉस करता है कोई वेट गेन करता है कोई कुछ के लिए आता है।

ये पंडाल टाइप लग रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है वाइट कलर का पूरा और लाइट पड़ के बहुत अच्छा लग रहा है।

देखिए ये खाने का स्टाल दुकान लग रहा है।

और एक दूसरे को सब देख भी रहे हें बातें भी हो रही हैं।

और सुन्दर लग रहे हैं और पीछे में भी बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं साइज़ बाई साइज़ छोटा बड़ा बड़ा से छोटा।

और बहुत सुन्दर लग रहे हैं यहाँ पर रंग बिरंगे जो फ्लावर्स लगे हैं ना छोटे छोटे गमलों में रेड हैं व्हाईट हैं यलो हैं।

बहुत अच्छा लग रहा है।

सूंदर लग--